यह एक बड़ा सा नीले रंग का गेट है जो की एक तरफ से बंद और दूसरी तरफ से खुला हुआ है।

पत्थरों पर एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़ के खडे हुए है और नदी के किनारे देख रहे है।